पेट्रोल पंप के ऊपर एक छत बना सा दिख रहा है जो कि नील--

घर के बगल में कई सारे हरे भरे घास लगे हुए दिख रहे हैं।

खड़ा हुआ दिख रहा है सामने एक घर बना हुआ अच्छा सा दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक जगह दिख रही है जो कि बाजार जैसी दिख रही है।